जाला लटकी हुई हैं पीछे की दीवार नीचे ब्लैक एंड व्हाइट और ऊपर लाल दिख रही है और मूर्ति के साइड में--

घर दिख रहा हैं जो उसकी दीवार लाल और उपर पीला कलर हैं और एक बड़ा सा झूला दिखाई दे रहा हैं और एक बड़ी --

निर्माया लिखा हुआ है और नीचे एनटीपीसी चिकितशालय कोरबा लिखा हुआ हैं और पीछे बहुत से पेड़े

कलर हैं और परदे लगे हुए हैं और नीचे पट्टी पे सफेद लगी--